डेकोरेट किया हुआ है और वहां पे शेफ बहोत सारे खड़ा है।

और आगे स्क्रीन है बहोत बड़ा स्क्रीन है ब्लैक कलर का--

एठ हाइट्स जो रेड कलर पे लिखा हुआ है व्हाइट कलर से।